यहां बहोत सारे आदमी और औरतें बैठे हुए हैं।

बहोत सारी किराने की चीजें हैं।

यहां पर कई बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहोत सारी खिड़कियां लगी हुई हैं और यहां एक सड़क भी हैं।

पार्क में बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं यहां कुछ झाड़ियां और पौधे भी लगे हुए हैं।

ये तस्वीर एक पारक की है।

यहां पर स्टेज लगाया गया है।

ये तस्वीर कान्हा जी की मूर्ति की है।

उसपर सफेद चद्दर और तकिए रखे हैं।

कुछ लड़कियां और लड़के कंप्यूटर सीख रहे हैं।

और लोग अपना सामान लेकर यहां पर बैठे हैं।

वो यहां दवाइयां छिड़क रहा है।

ये तस्वीर एस_बी_आई बैंक की है।

यहां पर बहोत सारी बाइके खड़ी हैं और स्कूटर भी हैं।

यहां पर एक सड़क बनी हुई है जिस पर बच्चे दौड़ लगा रहे हैं।

यहां बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां लगी--

और यहां चार सिल्वर कलर के पोल लगे हुए--

ये एक बहोत अच्छा होटल है।

ये तस्वीर बहोत सारे घोड़ों की है।

कच्ची घास और यहां रेत का मैदान है।

ये तस्वीर एक रोड की है। रोड पर दो कुत्ते खड़े हैं।

ये तस्वीर एक सड़क की है।